यहाँ पे एक आदमी बाल्टी में कपड़ा भिगो रहा है।

यहाँ पे एक बाल्टी रखी हुई है।

यहाँ पे एक टेबल रखी है।

यहाँ पे एक ट्रक खड़ी हुई है।

यहाँ पे इ बेंच पड़ी हुई है जो लोहे की है |

यहाँ पे छोटी-छोटी सिनरी लगी है।

यहाँ पे चार चिकन रखे हुए है।

यहाँ पे एक अलमारी अलमीरा है जो लकड़ी की है।

यहाँ पे बहोत से लोग खड़े हुए हैं।

सामने वाइट बोर्ड लगा हुआ है।

यहाँ पे एक काले रंग की चेयर है।

इसपे फूलो की माला जड़ी हुई है।

खिड़की यहाँ पे एक खिड़की है |